जिसके बाहर प्रह्लाद ट्रेडर्स के-पी-टिम्बर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वृक्ष दिखाई दे रहे है नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़े से पत्थर का चित्र दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखाई दे रहे है पत्थर मे बनी आकृति दिखाई दे रही है।